बंधन बैंक के बाहर का एरिया हम देख पा रहे हैं बाहर का जो सीन है वहाँ पर हम देख पा रहें हैं उसका जो अ आउटर ऐ इंटरफ़ेस है वो हम देख पा रहें हैं।

वाइ.सी. इलेक्ट्रिक व्हीकल की शॉप का जो फ्रंट इंटीरियर हम देख पा रहे है।

फ्रंट व्यू जो है वो हम देख पा रहे है जहां पर इलेक्ट्रिक रिक्शा खड़े हुए हमे दिख पा रहे है जो व्हाइट और पिंक कलर के बैलून की जो पिलर बनाये गए है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है इनॉग्रेशन सेरेमनी है देख के समझ में आ रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है।

ते यहाँ पे सादी पेन अ अ और पढ़ाई-लिखाई से सम्बंधित सारी सामग्रियां जो बिक्री होती है उसका सामान हम यहाँ पर देख सकते है सामान बि-बिक्री करते हुए।